यह एक टोयोटा कंपनी सर्विस सेंटर दिखाई दे रहा है।

यहां एक टी_वी भी रखी हुई हैं जिसका कलर --

यह एक वॉटरफॉल दिखाई देता है यहां--

यह एक छोटासा तलाब दिखाई दे रहा हैं।